एक डोर खुला हुआ है।

ये सॉस नजर आ रहा है।

एक मार्केट नजर आ रहा है यहां पर बहोत सारे सब्जियां नजर आ रहे हैं एक आदमी बैठकर कुछ बेच रहा--

और यहां पर एक तीन लोग ठहर कर खरीद रहे हैं यहां पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में सिनेपोलिस का बोर्ड लगा हुआ है वहां पर दो बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए है।

इस चित्र में एक किताबों की दुकान नजर आ रही है।

यहां पर पुश एक बोर्ड लिखा हुआ है।

ये जमीन पूरी खुली सी है।

चित्र में बड़ा सा रोड नजर आ रहा है।

आटो का कलर येलो एंड ब्लैक कलर का है उस आटो के पीछे एक व्हाइट कलर की गार कार जा रही है।

चित्र में एक पार्क नजर आ रहा है।

इस पार्क में बड़ा सा झाड़ है जो झाड़ को रेड कलर का पेंट किया हुआ है।

इधर तरफ और एक आदमी भी ठहरा हुआ है उसके सामने एक छोटे से बच्चों के खेलने के खिलौने है।

एक फिश मार्केट नजर आ रहा है यहाँ बहोत सारे मछलियां नजर आ रहे हैं।

और एक बॉक्स पर एक पानी का बोतल रखा हुआ है एक आदमी ऑरेंज कलर की चेयर पर बैठा हुआ है।

टेबल्स नजर आ रहे हैं चेयर्स नजर आ रहे हैं इसका डोर ग्लासेस से--

यह सारे कवर्स एक टेबल पर रखे हुए हैं।

वहा पर बहुत सारे चेयर्स बिछे हुए है।